सारे लोग बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

सारे ए_सी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सारी साइकिलें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं यहां पर एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

ले रहे हैं यहां पर एक झील के ऊपर एक रोड भी दिखाई दे रहा है।